एक ब्लू कलर का ड्रम है और उसके बगल में एक ग्रे कलर का ड्रम है ड्रम के ऊपर एक आदमी खरा है।

एक टेबल है टेबल के ऊपर एक पानी की बॉटल है दो ग्लास हैं एक चेयर लगी हुई है।

इमारत के बगल में कुछ पिलर्स खड़े हैं और सामने एक बड़ा सा पिलर खड़ा है।

उसके गेट के सामने दो लोहे के लाइट वाली लैंप भी खड़े हैं उसके बगल में ग्रीन कलर के छोटे छोटे दो गार्डन बने हुए है।

गाड़ी के नीचे एक टायर है शायद पंचर है। आदमी ने पर्पल और मटीले कलर की टी_शर्ट पहनी हुई है।

यह एक कॉलेज है जिसका नाम पी टी_पी वर्मा कॉलेज है।

इसके नीचे काफी सारी बाइक खड़ी है उसके बगल में एक आदमी खड़ा है।

और सामने ही सीढ़ियां जा रही है ऊपर की ओर--

उसकी व्हाइट कलर की सीलिंग है और सीलिंग के नीचे--

और कॉर्न टॉफी का डब्बा बॉर्नविटा क्रीम शैंपू --